ये सामने बड़ी सी बिल्डिंग का काम लगा हुआ है काम प्रगति पे चल रहा है उसमें आजू बाजू बल्लियां लगी हुई हैं नीचे--

ये कोई दुकान है दुकान के अंदर बहोत सारी चीजें बेचने के लिए रखी हुई हैं।

और इसके अलावा एक लाइट खींची हुई है। स्ट्रीट लाइट भी लगी है और बहुत सही सुंदर देखने में लग रहा है।

और भी गहना का सामान दिख रहा है सामने बड़ा सा बोर्ड लगा है उसमें भी बहोत सारा--

ये किसी बहोत ही शानदार फार्म हाउस का नजारा है बाहर बहोत बढ़िया शानदार गेट लगा है।

ये किसी बाहर शानदार रेलवे स्टेशन का नजारा है यहां पे पटपरा रेलवे स्टेशन है।

रेलवे स्टेशन के बाहर खंबे लगे हुए हैं प्लेटफार्म के बाहर बहोत सारे लोग हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन है।

महा माया ज्वैलर्स की शाॅप है और शाॅप के बाहर चार बाइक खड़ी हुई हैं जिसमें दो बाइक हैं दो स्कूटी हैं।

ये कोई बड़ी सी कप वगैरह की दुकान है बहुत सारे कप रखे हुए हैं बहुत सारे बर्तन हैं चीनी मिट्टी के।

येह दो खंबे लगे हैं स्ट्रीट लाइट लगी है और कितना सुंदर--

और चारों तरफ हरियाली है हरी भरी पेड़ हैं और एक कॉलोनी --

और बहुत ही शानदार वृक्ष लगे हुए हैं रेड कारपेट बिछा हुआ है बहुत सारी पब्लिक है।

इत्यादि सामान रखा हुआ है और सामने की शटर लगी हुई है जो रेड कलर की --

ये जो है। कपड़ा की दुकान है दुकान में प्रकार के--

ये किसी ऐतिहासिक धरोहर का दृश्य है इसके बाहर--

ये किसी रेस्टोरेंट की फोटो है इसमें बहुत ही अच्छी लाइट --

महिला हाथ में बोहोत सुंदर चूड़ियां पेहनी हुई है और कमर में भी कुछ पेहना हुआ--

हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं बहोत बड़ा मैदान है।

और ये दिवाले बनी हुई है सामने बिल्डिंग भी बनी है।

और ऊपर लाइट फिटिंग है। सामने आजूबाजू पर्दे लगे हुई है --

ये किसी गार्डन का बहोत ही सुंदर दृश्य है आजू बाजू ये संभाफनी की पेड़ लगी हूं शो केस के लिए--

और चारों तरफ बहोत सुंदर नजारा है।

एक बाहर स्कूटी खड़ी है भारतीय स्टेट बैंक का एक बड़ी सी होडिंग लगी हुई--

विभिन्न प्रकार की एक बाहर रेलिंग लगी हुई है।